यह एक जिम क्लास है जिम क्लास में एक लड़का जिम कर रहा है उसके जिम के समान का कलर गुलाबी--

यहां पर एक बड़ा सा कमरा दिख रहा है उस कमरे में ब्राउन कलर का टेबल रखा है ब्राउन कलर की चेयर रखी है।

यहां पर एक कपड़ों का शोरूम दिख रहा है उसमें बहुत सारे पजामे लगे हुए हैं।